जीत का आनंद ले रहे हैं जहाँ सब एक दूसरे को देख रहे हैं।

बिल्डिंग बनी हुई है। बहोत सारे लोग हैं जो कि आ रहे हैं जा रहे हैं। बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

और उसके बाजु से बोहोत सारी शॉप है। द पिज़्ज़ा विज्ज़ा की भी शॉप है।

रेल फाटक लगा हुआ है।

के बाद बोहोत सारे डी.जे. रखे हुए हैं यहां। यहाँ पे बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

के अलग-अलग वेरायटीज के कपड़े रखे हुए हैं।

होटल के बाजु से ठेला खड़ा हुआ है। ठेला के बाहर बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। गाड़ी रखी हुई है।

ये एक गार्डन है। गार्डन के बाहर बोहोत सारे साइड में बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

बोहोत अच्छे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं और लड़का बोहोत खुश लग रहा है।

और बोहोत भीड़ है। यहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं। खुद से भी आ रहे हैं।

गोंद वोंद भी रखी हुई है। पेंसिल रबर भी है।

रस्ते के ठीक सामने एक बोहोत बड़ा ग्राउंड है।